दो साइड से गाड़ियां दो हैं जिनकी सर्विस चल रही है या तो मेंटीनेंस चल रही है क्योंकि टायर वगैरह नहीं लगे व्हाईट कलर --

एकदम से ख़राब ख़राब सी लग रही है।

इस फोटोग्राफ पे अ एक पारक है।

वुडेन कलर का सब कुछ है चॉकलेट ब्राउन ।

ये वाली जो फोटो हमें दी गई है ना सामने--

लेफ्ट साइड से एक बड़ा सा टी_ वी_ है और--

ये किसी के ऑफिस की केबन की फोटो है।

ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं।